यहाँ पर आप देख पा रहै हैं की आपको मकान देखाई दे रहे हैं जिनके पीछे पेड़ लगे हुए है बाहर बहौत बड़ा मैदान है जिसमें हरी-हरी घास लगी हुई है।